एक आदमी काले कपड़े पहने खड़ा हुआ है।

जो कि इनके अंदर कुछ सामान रखा हुआ लग रहा है।

सामने ही हमें काफी सारे पेड़ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं और एक रेडियो लगी हुई दिखाई दे रही है।

और जिसी हमें अलग कलर में दिखाई दे रहा है नीचे हमें ब्लू कलर की एक चादर बिछी दिखाई दी गई पीछे हमें एक तकिया रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें सामने ही तीन चार व्यक्ति खड़े हुए व दिखाई दे रहे हैं जो की खाने की प्लेट में खाना डाल रहे हैं।

उसके नीचे ब्लैक कलर मे एक जाल खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसके सामने कुछ व्हाइट कलर का भी रखा हुआ है ग्राउंड में सारे में घास जमा हुआ है हरे कलर का।

इसके नीचे से हमें एक नदी जाती हुई दिखाई दे रही है जो कि बहुत शुद्ध औल पावन है।

और ब्लू कलर का शटर पर रंग हुआ है।